और संग्रहालय का नाम लिखा हुआ है।

मस्जिद की इमेज है। इस इमेज में हमें मस्जिद दिखाई दे रही है और मस्जिद के बाहर एक ग्राउंड जैसा दिखाई दे रहा है।

बस स्टैन्ड की इमेज है। यहाँ पे बोहोत सारी बसे रखी हुई हैं।

चर्च के दरवाजा दिखाई दे रहा है।